तोते एक पाइप पे बैठे है और यहाँ उनके पीछे पक्षी रखने का नेट रखा हुआ है ।

और निचे में कारपेट लगा हुआ है जिसपे बहुत सारा फूल रखे हुए हुए हैं फूल में अधितकर पिंक कलर के है और कुछ वाइट कलर के है।

एक लड़का बैटिंग कर रहा है और एक बॉल कर रहा है और दूर एक लड़का खड़ा हैं जिसके हाथ मे बैट हैं।